ब्लू कलर के डस्टबिन भी दिख रहे हैं।

और बिजली के खंभे और तारे भी दिखाई दे रही --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

दुकान में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दुकान में पूजा भी चल रही है।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

आसपास हरी हरी काई भी दिखाई दे रही है।

करी भी दिखाई दे रही है और यहां पर सैलेड भी दिखाई दे रहा है।

फोटो दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे--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

क्लासरूम में बहोत सारे बेंच और बैक्सेस--